आनर्द्रा बैंक है आनर्द्रा और इस बैक और हाँ बैंक संबधित कोई भी काम होता है तो इसको बैंक का मेनेजर संभालता हैं क्योकि गाँव का गृ क्योंकि गाँव का जो बेरोजगार लोग हैं रोजगार गारंटी संबधित या नौकरी--

इसके अंदर कितना फ़ैसलिटी दी गई हैं ये वही लोग ऐसा करता हैं जैसे कोई बिसनेसमैन हो नौकरी करने वाला हो किशान ऐसा नई करता क्योंकि उसके पास--

देखिये ये घर हैं और इसमें खजूर पेड भी दिख रहा हैं और इसमें अशोक का पेड़ भी दिख रहा हैं और बीच में घास उगा हुआ हैं देखिए कितना इसका ना--

और बैठने का फुल व्यवस्था हैं यहाँ पे अच्छे-अच्छे लोग स्टार लोग या साहब लोग या विधायक लोग अच्छे-अच्छे लोग यहाँ पे बैठने की--

लेकिन स्वर्ग तो नीचे बना है नीचे घर भूमी पे ये बिल्डिंग बना होगा किसी ने बनाया होगा और हम तो इसे देख रहे है और देखने का पैसा नहीं लगता।